यह तस्वीर एक कॉफ़ी शॉप की है। जहाँ कॉफी का सामान कॉफ़ी कप और कॉफ़ी मशीन रखी है।

तस्वीर एक क्लासरूम की है जहाँ बहोत सारी बेंच रखी हुई है। सामने एक टेबल और चेयर भी रखा है। साइड में वॉल में एक ब्लू बोर्ड भी लगा है।

जहाँ पीली फूल सफ़ेद फूलपिंक फूलरेड फूल जैसे रखे हैंसामने कुछ गमले भी रखे हैं।

यह एक सामने खड़े डमी की है जो रेड कलर का टीशर्ट पहने खड़ा है | इसके पीछे बहोत सारे सामान और कपड़े रखे हैं ।